और इनमें कुछ सामने लोहे की जंजीरें भी रखी हुई है और कुछ डांडिया भी रखी हुई है।

यह एक दुकान है जिसके अंदर कुछ कूलर पंखे और कुछ इलेक्ट्रिक सामान भी रखा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक शोरूम दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल भी लगे हुए हैं।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि सामने एक शॉप है जो की पंचर निकालने की है।

और सामान रखा हुआ है और पेट्रोल पंप एकदम खाली पड़ा हुआ है।

इस फोटो में हमें एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जोकि फास्ट फूड का है।

इस फोटो में हमें दिखाई दे रहा है कि यह एक घर या एक बिल्डिंग है जिसका काम चालू है।